यह एक यम मेला नजर आ रहा है जिसमे कई सारी शॉप्स लगी हुइ है बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई है।

यहां नेताये लोग खड़े हुए हैं डेकोरेशन हुआ है कोई संस्था लग रही हैं।